एक नाव थोड़ा अंदर के नीचे अंदर की ओर धसी हुई है और उसमें घास का मैदान है दूर-दूर गाछ वृक्ष दिखाई पड़ रहा है।

कमरा है कमरे मे दो चेयर लगी हुई है।

और उसमे मिरर लगा हुआ है और उसमे लाइट भी लगा हुआ --

समारोह है समारोह में बहुत सारी लड़कियाँ हैं बच्चे हैं औरत सब है।

नीला कलर का मोजा पहना है उसमे फुटबॉल खेल रहा है चारों साइड से जालियां लगी हुई है।

हरे-भरे छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है कुछ बड़े पौधे हुए है।

और पेड़ को व्हाइट कलर के चूने से पुतवाया गया है।

इसके साइड में भी कुछ-कुछ भगवान है ऊपर में अच्छा जैसा एक सामियाना बना हुआ है उसमें सजावट किया हुआ है।

जे पंडाल को हम कई तलर के पर्दे से बनाया है पंडाल के नीचे सीढ़ी है।

और बगल में हरा भरा गाछ भी दिख रहा है और निचे एक लड़का --